पीछे कुछ दिखाई दे रही हैं ऊपर पन्नी के अंदर में दिखाई दे रही हैं और उसके साइड में कुछ खिलौने टंगे हुए दिखाई दे रहे हैं सामने एक टेबल दिखाई दे रही हैं जिसके उपर टेप रखा हैं टेप के मशीन --

एक डाली हुई दिखाई दे रही हैं एक क्राउन दिखाई दे रहा हैं सामने पे एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा हैं सामने कुछ और छोटे छोटे पेड़ दिखाई दे रहा है।

सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं जिसके अंदर की खिड़कियाँ दिखाई दे रही हैं सामने कुछ मिट्टी पड़ी दिख रही हैं और कोने पे कुछ रैलिंग लगी हैं लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ केंट बने दिखाइ दे रहे हैं।

-- ओ पीछे के साइड मे कुछ पहाड़ी इलाका दिख रहा हैं जिसके उपर कुछ झाड़ लगे हुए निकले दिख रहे हैं सामने एक रैलिंग बने हुए दिख रही है पास में एक बाइक के पीछे का हिस्सा दिखाई दे रहा हैं।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

दो पिलर खड़े हैं जिनके उपर कुछ फूल लगाके कुछ डिजाइन बनाए गए दिख रहे हैं अंदर का हैं गार्डन का फोटो दिखाई दे रहा हैं उपर साइड में कुछ फूल लगे हैं और कुछ गोल आकृती की डिजाईन टांग के रखी हुई हैं।

तार कैम्प दिखाई दे रहे हैं चार टेंट बने हुए दिखाई दे रहे हैं सामने टेंट गेट सामने चेल बंद दिखाई दे रही है पीछे के साइड एक की रैलिंग एक लोहे की रैलिंग बनी हुई दिखाई दे रहीं हैं नीचे के साइड घाँस उगे हुए दिख रही है। ;

झरना बहते हुए दिखाई दे रहा हैं झरना के पानी नीचे के साइड जाकर जमा इकठ्ठा हुआ बहता हुआ दिखाई दे रहा है ज झड़ने के अंदर बहुत बड़ा बड़ा पत्थर बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं प--

किसी घर का दिखाई दे रहा है फोटो जिसके अंदर नीचे के साइड खिड़किया और दरवाजे बने है ऊपर कुछ चद्दर टिन शेड बना है जो एक के ऊपर एक बना है।

बिल्डिंग का फोटो दिख रहा है जिसके अंदर उपर के साइड बल्कनि दिख रही हैं बाल्कनीया उपर के साइड कुछ पिल्ले बने दिखाई दे रहे हैं।

--पा के अंदर बनी हुई घरों का फोटो दिखाई दे रहा हैं जिसके अंदर दो कलर दिखाई दे रहे हैं घर के आगे लकड़ी से उच्च बॉउन्ड्री बनाई है जिसमे घेत बनाया लकड़ी से रहा हैं।

एक मकान का फोटो दिख रहा हैं जिसके अंदर खिड़की लगी बनी हुई दिखाई दे रही हैं खिड़की के बाहर कुछ नीले कलर के पट्टे बने दिखाई दे रहे हैं ऊपर की तरफ छत दिख रही हैं छत के अंदर कोने पर रेलिंग दिखाई दे रही हैं।